और कुछ सेलिब्रेशन बड्डे सेलिब्रेशन वगैरा कर सकते हो।

यहां पर रेड कलर से का एक पीछे एक ट्रक भी है।

काश बहुत ही सुंदर वाइन कलर में सोफा सेट भी लगा हुआ है।